कार रहने से हम वन प्लेस टू अनअदर प्लेस ईजीली ट्रेवल कर सकते है बगैर किसी टेंशन के हम ईजीली हमारा सफर का जो इंजॉय कर सकते हैं। हम सफ़र को हमारे --

हरन एक जंगली जानवर है यह जो होता है बकरी की तरह दिखता है।

इस फोटो में कैरेट बताए गए है। एप्पल बनाना चीकू ऑरेंज यह सब फल बताए गए है और बहुत सारे फल यहाँ है।

ये एक जिम की तस्वीर है | काफी मॉड्यूलर जिम ये है।

इस फोटो मे पानी का व्यू बताया गया है और झाड़ भी लगे हुए हैं बहोत सारे द पो झाड़ यहाँ हैं और आसमान भी दिखाया गया है।

और ये भी रस्ते के बीच में खड़े है चारों भी और ये कार सफेद कलर की है।

नांगर का जो इस्तेमाल है वो खेती के काम के लिए होता है ट्रैक्टर भी खेती के काम मैं बहुत मदद हो होती है ट्रैक्टर के होने से --

यह हरी मिर्ची की तस्वीर है। हरी मिर्ची डेली यूज में बहुत इस्तेमाल में होती है। जो खाना कुकिंग करते हैं तब बढ़िया --

और जिस ह और बोर्ड लगाया गया है और पिन लगायी है ।